दूर-दूर से यहाँ आते है लोग सब्जि खरीदने के लिए ताजे-ताजे हरी-हरी सब्जिया यहाँ बेची जाती है।

जो देखने में काफी अच्छे लग रहे है अच्छे सजावाटी की गई है दुकान की--

के बारे में सुनते है देखते है।